और येलोइश कलर के फ्लार्स है और ऑरेंज कलर के फ्लार्स हैं।

और यहां पे अपनी रिचुअल्स के साथ ही शादी हो रही है अच्छा लग रहा है ये देख--

बजार में जाके इन मच्छियों को बेचे अ एक मच्छी एक कैरेट में तो फूल भरी हुई है और एक कैरेट में--

और ये चीज मुझे दिखने मे बहोत ज्यादा अच्छी लग री है और ये किसी कैफ में है।

इस फोटो में मैं देख रही हु की एक ये फ्रूट शॉप हैं जिसमें बहोत से फ्रूट्स हैं जैसे की वाटरमेलन ऑरेंज ग्रेप्स ॲप--

प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है और चार लोग बैठ के वो सुन रहे हैं इस यहां पे एक मीटिंग चल रही है जिसमें अह एक एह एक इंसान--

सीमेंट को मिक्स करके पानी से मिक्स करके वो भर रहे हैं ताकि लेंटर डल जाए और ये सरिये लगे हुए हैं जिससे लेंटर डालेगा और--

टी_वी है और सोफे पे कपड़े रखे हुए हैं और एक लड़की बेड में बैठी हुई हैं जिसने जो रजाई ओढ़ के बैठी हुई है इसमें।